हेअरकट करा रहे हैं |

और एक लड़का साइड में बैठा है |

जो की कचरा फेकने के काम आते हैं |

नी का पन्नी होगा और खेत के जस्ट अअ सामने बड़ा-बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

यह एक मैरिज और रिसेप्शन हॉल है।

और इनके जस्ट पिछे में बहुत सारे घास दिख रहे हैं।